नमस्कार दोस्तों! यह दृश्य एक होटल का है जहाँ पर कमरे में एक फ्रिज रखी हुई है। दो मेज पड़ी हुई हैं।

माता-पिता अपने बच्चो को स्कूल से लेने आये हैं।

नमस्कार दोस्तों यह दृश्य एक मंदिर का है जहाँ पर भगवान की प्रतिमाए रखी हुई हैं।

तथा एक पुजारी वहाँं पर पूजा करता हुआ दिखाई दे रहा है तथा वहाँं पर जोत भी जल रही है।